दिख रहा है ये स्कूल उसके बारांडे का यह फोटो ली गई है यहाँ पर बहुत सारे महापुरुषों की तसवीर लगाई गई है भगत सिंह --

सरदार वल्लभभाई पटेल भारत माता रानी लक्ष्मी बाई।

जस्ट उसके पीछे लिखा हुआ है चांद के पार चलो और थोड़ा सा नीचे पहियों के पास लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ।

यह एक मेगा प्रोजेक्ट --